मुझे गाड़ी दिखाई दे रही है। मुझे आदमी दिखाई दे रहा है। मुझे बाइक दिखाई दे रही है।

मुझे घास दिखाई दे रही हैं या बस दिखाई दे रहा हैं।

मुझे आकाश दिखाई दे रहा है। मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

मुझे पूजा दिखाई दे रही है।

यहाँ आदमी दिखाई दे रहे हैं और बाइक दिखाई दे रही है और पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग दिखाई दे रही है।